जिसमें कि शोकिस में रखा गया है जिसमें कुछ ऊपर की साइड में हार्पिक है जो नीले कलर की है नीचे कि साइड में स चेप्स केचप कि बोतल रखी गई हैं।

सामने कि और में एक स्कूली जा रही है जिस पर कुछ आदमी हैं और एक रेलिंग पे लड़का झांक रहा है आस-पास में पेड़ भी लगे हुए हैं जो काफी बड़े-बड़े हैं।

यहाँ पे एक कार है कार जो है वो सफ़ेद कलर की है और उसमे सामने की ओर भी एक बोर्ड लगा हुआ है जो की पीले कलर का है और यहाँ पे दो लोगों की परछाई दिखाई दे रही है जिसमें एक --

यहाँ पे एक झरना दिखाई दे रहा है झरना जो है काफी बड़ा है और देखने पर लग रहा है यह काफी गहरा भी है और आजू बाजू में कुछ पत्थर भी डले हुए हैं और कुछ जंगली एरिया भी है ।

यहां पर बहुत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है मैदान काफी बड़ा है और देखने पर लग रहा है कि नीचे की साइड में सिर्फ पक्का फार्स किया गया है सामने की ओर में एक बिजली का खम्बा बना हुआ है जिस --

इसमे लोहे की सिमेन्ट का बना हुआ है आजूबाजू मे पेड़ लगे हुए हैं पेड़ जो हैं काफी बड़े बड़े हैं सामने की ओर मे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग मे सफेद और पीले --

डोलस भी दी गईं हैं और देखने पर लग रहा है ये टेडियों की दुकान है सामने की ओर में फर्श है और मैदान पड़ा हुआ हैएक गेट भी है ।

यहाँ पे एक मंडप है मंडप जो है काफी बड़ा है और पिंक कलर के और सफ़ेद कलर के पर्दे से सजाया गया है। ऊपर की साइट में लाइट लगायी गयी है जो की बोहोत सारी हैं।

यानि यह हनुमान जी का मंदिर है यह पर बोहोत सारे नारियल बंधे हुए हैं जोकि लाल कपड़े और पीले कपड़े मे हैं रेलिंग भी है।

यहाँ एक मूर्ति है मूर्ति जो है वो हनुमान जी की है हनुमान जी सामने की तरफ देख रहे हैं इनने माला पहनी हुई है जो कि पीले कलर की फूल की है बाजू में एक मूर्ति की --